इस तस्वीर में सफेद रंग का एक घर दिख रहा है और बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहा है।

कार्टून बॉक्स भी दिख रहे है।

कोलगेट भी दिख रहा है ऊपर में खाने का चीज टंगे हुए दिख रहा है।

टेबल में कंप्यूटर भी दिख रहा है।

बाहर में लड़की और लड़का का तस्वीर भी लगा हुआ दिख रहा है।

असमान भी दिख रहे है।

आसमान भी दिख रहा है।

और बाहर में तीन इंसान भी दिख रहा है।

शीशा भी दिख रहा है ताकिया भी देख रहा है दीवार में लगे हुए कैलेंडर भी दिख रहा है शीशे के बॉक्स में ढेर सारा डब्बा भी दिख रहा है।

दीवार में लगे हुए स्मार्ट टीवी भी दिख रहा है स्विच बॉक्स भी दिख रहा है।

घर के सीलिंग मे भी देख रहा है और बहोत सारा फोटो फ्रेम भी दिख रहा है शिशा भी दिख रहा है।